किसी चिडियाँ खाना का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा जहां पर एक --

काफी भारी वस्तुओं को उठाने वाला--

जहां पर मुख्य सड़क के बगल में।

क्लासरूम का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक साइड के दीवाल पर।

बगान का सजा है एक दृश्य दिखाई।

दे रहा है जहां पर।

एक क्रम में रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां।

दृश्य दिखाई दे रहा है ।

पत्थरों की चट्टाने रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

काफी साफ-सुथरा माहौल दिखाई दे रहा है।